कुछ लोग खड़े और बैठे हुए नजर आ रहे है।

एक हरे रंग की दरी बिछी हुई है बांस लगे हुए हैं सपोर्ट के लिए दो आदमी नजर आ रहे हैं।

बड़े-बड़े पलंग बिछे हुए है बिच में एक साड़ी पड़ी हुई दिखाई दे रहीं है यलो कलर की स्टूल नज़र आ रहें है सुई दिखाई दे रहीं है।

गोल्डन शॉप लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इसका गेट ब्लैक कलर का है ग्रीन कलर का डस्टबीन नजर आ रही है और एक पुट्ठा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

हरे रंग की दाल दिखाई दे रही है बालकनी नजर आ रहा है।

सामने एक ऑटो दिखाई दे रही जिसका कलर ब्लैक और येलो है।

काले कलर का गेट दिखाई दे रहा है पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने फ्यूज़ दिखाई दे रही है लाल रंग की--

फोटो नजर आ रहा है जिसमें राउंड बना हुआ है ग्रिल का।

एक कलर का बोर्ड है जिसमें हरे रंग से बॉयज हंड्रेड परसेंट लिखा नजर आ रहा है एक क्रीम कलर का टेबल बना हुआ है कांच का--

सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें मानसरोवर स्टेशनरी लिखा हुआ दिखाई दे नीले कलर का छाता नजर रहा है ब्लू कलर का।

और एक लाल कलर की फ्रीज़ दिखाई दे रही है जिसमें कोको कोला लिखा हुआ है एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ नज़र आ रहा है सामने एक काले कलर की चेयर नज़र आ रही है वेलकम लिखा हुआ है।